ये बड़ी सी नंदी ये जो काफी पानी भरा हुआ है अगल बगल छोटे छोटे पेड़ पोधे है जो हरे रंग की पत्ती हे ऊपर के साइड पे कुछ घास उगी हुई है हरे रंग की घास है।

सामने दरवाजे है लाल रंग के।

सामने एक बड़ी सी जाली है दो जग रखे हुई है जिसमे पक्षी पानी पि रहे है कबूतर र एक कबूतर है जो सफ़ेद और काले रंग के कबूतर एक बच्चा--

में एक आदमी जा रा है जो काले रंग की गाड़ी और बेग रखे हुए बगल में डीबाईडर है सफ़ेद और काले रंग की एक आदमी टहलते हुए जा रा है अम सामने से एक ऑटो आ रही हैं सफ़ेद पीले रंग की ऑटो है बड़ी सी बिल्डिंग है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका सर दिख रहा है बगल में एक कुर्सी रखी गयी है लाल रंग की पीछे की साइड में बहुत बड़ा पहाड़ है।

सामने दो ऑटो खड़े हुई है काले रंग की काले रंग की छत है बगल में एक बस खड़े हुए है सफ़ेद और नीले रंग की बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

दो गाड़ी खड़ी हुई है ये सामने एक साइड पे घर है सफेद रंग की अलग बगल पेड़ पोधे है हरी भरी पत्ती है सफेद और नीले रंग की आसमान है बगल में पेड़ है जो भूरे रंग की हरे रंग की पत्ती है।